और इसमें रंग - बिरंगी लाइटें भी जगमगाती दिखाई दे रही है।

इस चित्र में हमें मीना बाजार का नजरा भी दिखाई दे रहा है जिसमें कई रंग बिरंगी लाइटे --

इस चित्र में हमें आड़े और खड़े लोहे के सर यह दिखाई दे रहे हैं सफेद कलर के पाइप भी दिखाई दे रहे है।

पांच पिलर के ऊपर तीन की छत भी दिखाई दे रही है दुकानो का रंग सफेद कलर और नारंगी दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में हमें एक सफेद कलर की एक मंजिला इमारत दिखाई दे रही है जिसमें हरे कलर की बहुत सारी खिड़कियां दिखाई दे रही है।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

इस चित्र में हमें खुले आकाश के नीचे एक बड़ा मैदान दिखाई दे रहा है जिसके चारों ओर बहुसंख्यक--

इस चित्र में हमें एक ठेले के ऊपर कई सारे स्टील के बर्तन दिखाई दे रहे हैं एक पॉलिथीन में--

इस चित्र में हमें तेज सूरज जगमगदा हुआ दिखाई दे रहा है।

सिलेटी कलर के लोहे के खंबे दिखाई दे रहे है।

आपस में गुठ बनाये हुए बैठे हुए है और कुछ बिल्डिंगे अभी दिखाई दे रही है।

मंच पर एक कुलर रखा हुआ दिखाई दे रहा है और सफेद कलर का एक सोफा भी रखा हुआ दिखाई दे रहा हैं।

पिलर दिखाई दे रहे हैं ऊपर की ओर पांच खिड़कियां दिखाई दे रही है और नीचे की ओर कई कार रखी हुई दिखाई दे रही है।

बाउंड्री बनी दिखाई दे रही है और ए बोर्ड भी दिखाई दे रहा हैजिस पर तीर का निशान बना हुआ है।